user group and entity reference पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम user group content type बनाना
user group फिल्ड जोडना और entity reference के साथ content types को कनेक्ट करने के बारे में सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर का उपयोग कर रही हूँ
आप अपने पंसद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं
events content type को याद करें जिसे हमने पिछले tutorial में बनाया था
हमने पहले पाँच fields बनाएं जो यहाँ दिखाये गये हैं
event sponsor field को बनाने के लिए हमें user groups content type बनाने की जरूरत है
user groups people का एक groups है जो event का आयोजन करने के लिए एक साथ आते हैं
जैसे कि cincinnati user group drupal mumbai group bangalore drupal group आदि
पहले user groups को paper पर बनाते हैं
group website contact person उनका email और उनका experience level हो सकता है
drupal में url और email के लिए default fields हैं इसलिए हमने इन field types को चुना है
व्यक्ति का name name field द्वारा कैप्चर किया जा सकता है लेकिन अभी के लिए हम text plain प्रयोग करेंगे
user experience levels beginner intermediate या advanced में से कोई एक हो सकता है
इसे लागू करने के लिए हम list text field type चुनेंगे
यहाँ अंतिम field इस group द्वारा प्रायोजित सभी events को कैप्चर करने के लिए है
इसके लिए हम मौजूदा events content type को link करने के लिए entity reference field का उपयोग कर सकते हैं
user groups content type को set करें
add content type पर click करें इसको user groups दें
ध्यान दें कि machine name user underscore groups है
description में type करेंthis is where we track the drupal groups from around the world
title field label में हम इसे user group name name देंगे
events content type की तरह ही इसे set करें
publishing options टैब पर click करें
default options में create new revision published और promoted to front page को check करें
tab display settings टैब पर click करें
फिर display author and date information box को अनचैक करें
अंत में menu settings टैब पर click करें और main navigation box को अनचैक करें
जब हमने उन्हें set कर दिया है फिर हम नीचे save and manage fields button पर click कर सकते हैं
हम manage fields पेज पर आ गए हैं
यहाँ body में label को बदलें
operations column के नीचे edit button पर click करें
label field में user group description type करें और फिर नीचे save settings button पर click करें
हम शीर्ष पर हरे रंग में सफलता का message देख सकते हैं
इस content type के लिए हम केवल 5 fields को set करेंगे
हमने पहले ही एक field बनाया है अब एक और बनाते है
add field button पर click करें
इस case में हम reuse an existing field ड्रॉपडाउन पर click करेंगे
देखें कि link: field _ event _ website field उपलब्ध है
क्योंकि हमने पहले ही इसे event website named दिया है
field का पुन: उपयोग हमें drupal database में table को पुन: उपयोग करने की अनुमति देता है
यह समान field के लिए विभिन्न् settings बनाये रखने से किया जाता है
इस case में नया field set करने के लिए यह अधिक समझ में आता है
add a new field ड्रॉपडाउन में link field type चुनें
label में type करें group website
save and continue पर click करें और फिर save field settings पर click करें
इस बार हम external links only चुनेंगे क्योंकि किसी भी user groups का drupalville में कोई भी पेज नहीं है
नीचे save settings button पर click करें
एक बार फिर से add field पर click करें
इस बार हम contact persons के name के लिए text field का उपयोग करेंगे
add a new field ड्रॉपडाउन पर click करें और field type text plain चुनें
हम label को group contact name देंगे
save and continue पर click करें और फिर save field settings पर click करें
फिर नीचे save settings button पर click करें
एक बार फिर से add field button पर click करें इस समय ड्रॉपडाउन में email field चुनें
हम label को contact email name देंगे save and continue button पर click करें
allowed number of values में हमें केवल 1 चाहिए save field settings पर click करें
यहाँ और कोई settings नहीं है अत: हम नीचे save settings पर click करेंगे
एक बार फिर से add field button पर click करें
इस बार field type ड्रॉपडाउन में list text option को चुनें
label field में हम group experience type करेंगे और फिर save and continue button पर click करेंगे
इस field type के बारे में ध्यान में रखने वाली बातें इस message में दी गई है
these settings impact the way the data is stored in the database and cannot be changed once data has been created
यही एक कारण है कि हम planning पर जोर डाल रहे हैं
यहाँ अपनी values जोडेंbeginner intermediate advanced और expert
हमारा user group बहुत आसानी से एक से अधिक values को उन पर लागू कर सकता है
allowed number of values में limited को unlimited में बदलें और फिर save field settings पर click करें
अब save settings पर click करें
यहाँ हमारे पास जोडने के लिए एक और field है जोकि entity reference field है
अब हम सीखेंगे कि entity reference क्या है और इसे कैसे बनायें
अपनी website में एक कार्य हम यह करना चाहते हैं कि events user groups द्वारा प्रायोजित हो और user groups events प्रायोजित कर सकें
website में यह बहुत ही सामान्य बात है जहाँ आप एक साथ दो अलगअलग कंटेंट को link करना चाहते हैं
events user groups द्वारा प्रायोजित हैं अत: हम user group की जानकारी प्रत्येक events के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं
अब इसे set करें add field पर click करें
यदि आप database person हैं तो आप इन्हें data में many to many relationship के रूप में पहचानेंगे
add a new field ड्रॉपडाउन पर click करें इस बार reference के नीचे content को चुनें
label field में हम events sponsored type करेंगे और फिर save and continue पर click करें
फिर हमें type of item to reference चुनने के लिए पूछता है
आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे options हैं
हम इसे बहुत ही आसान रखेंगेcontent चुनें
allowed number of values में unlimited को चुनें
फिर save field settings पर click करें
यहाँ settings पेज पर हम चुनेंगे जो content types user groups द्वारा संदर्भित हैं
हम events content type को संदर्भित कर रहे हैं
यहाँ जब मैं एक event जोड रही हूं तो केवल events स्पष्ट होगा जब मैं events title टाइप करना शुरू करूँगी
इसीतरह हमें सुनिश्चित करना है कि हमने यहाँ सही content type को चुना है
events चुनें और save settings पर click करें
अब हमें अपने events content type में इसी तरह करना है
structure पर click करें फिर content types पर click करें
फिर events content type के लिए manage fields चुनें
एक और field जोडें add a new field ड्रॉपडाउन में content को चुनें
label field में type करें event sponsors
save and continue पर click करें
allowed number of values को बदलें unlimited को चुनें
यह इसलिए क्योंकि एक से अधिक user group event को प्रायोजित कर सकते हैं अब save field settings पर click करें
इस बार reference type के नीचे user groups चुनें
फिर से यह इसलिए क्योंकि हम events sponsors field के लिए user groups संदर्भित कर रहे हैं
save settings पर click करें
अब यह उन दो content types को एक साथ many to many relationship में links करता है
ये events sponsors और किस user group द्वारा क्या प्रायोजित किया जा रहा है इस पर आधारित हैं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
इस tutorial में हमने user group content type बनाना
user group फिल्ड्स को जोडना और entity reference के साथ content types को कनेक्ट करना सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद